दिख रहा है। बोहोत सारे लोग दिख रहे। स्टेडियम टाइप का है। बिल्डिंग्स दिख रही हैं। --

व्हाइट व्हाइट कलर पे रेड कलर से होटल विनायक लिखा हुआ है। बगल में --